इसमें घर का समान हल्दी के मसाले आदि भी हैं।

यह एक संगीत के उपकरणों की दुकान है।

जिसमें हम केबिन्स बने हुए देख सकते हैं।

सामने एक डेल का कंप्यूटर रखा हुआ है तथा एक टेलीफोन भी है।

यह एक स्कूल का दृश्य है जिसमें हम--

तथा यह समय रात्रि का है घर बहोत बड़ा तथा--

यह एक घर का दृश्य है।

और दो पुरुष भी है यहां एक गाय भी हैं।

तथा उनके नाक का रंग सफेद है।

बहुत सारा लोहे का समान देख सकते हैं।

जिसमें हम मुर्दों को बंद करके कब्रिस्तान में दबाते हैं।

यहां हम हरियाली देख सकते हैं।

यहां पर एक एंबुलेंस भी हैं हॉस्पिटल बहोत ज्यादा बड़ा हैं।

यह एक फैक्ट्री का दृश्य है।

नारियल का पेड़ भी शामिल है हम पेड़ों से गुजरती हुई बिजली की तारें भी देख सकते हैं।

हम इसमें डी_जे देख सकते हैं।